कुछ लोग बाइक्स पे बैठे हुए है सामने की ओर में एक टेलीविजन भी लगी हुई है।

और सामने की ओर में बोहत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है जिसमे साइकल है कुछ स्कूटी है।

ऊपर की साइड में एक बैनर लगाया गया है।

ऊपर की साइड में बहुत सारी लाइट्स लगी गई है | लाइट्स जो है कुछ जल रही है कुछ बंद पड़ी हुई है ।

इसमें से कुछ लेडीजे हैं कुछ गेट्स हैं यहाँ पर कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बोहत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है पूल के ऊपर एक ट्रैन जा रही है।

में हरे कलर के हैं लाल कलर के हैं पीले कलर के हैं और ब्राउन कलर के हैं।

टाइल्स जो हैं ब्राउन कलर के पीले कलर के और काले कलर के हैं सामने की ओर में दो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं।

जो की लाइन में खड़े हुए है ऊपर की साइड में एक बैनर लिखा गया है।

यहां पे बोहत सारे बलेन लगे गए है बलून जो है वो रेड कलर के है।

जो की इस गेट के अंदर जा रहे है कुछ लोग दुकानों पे खड़े हुए है यहां पे बाइक्स भी लगी गई है।

यहां पे कुछ साठे के पेड़ रखे गए है।

यहां पे बोहत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग तीन चार मंजिल है।

यहाँ पे एक दुकान लगी हुई है दुकान को देख के लग रहा की यह चाय का स्टाल है।

वाइट कलर से पोती गई है । उसमे जो दरवाजा निकाला गया है उसमे बहुत मोटे मोटे खम्भे बनाये गए हैं ।

सामने की और में एक पैडल टंगा हुआ है बैनर जो है पीले कलर से है।

बॉक्स के आस-पास में बोहत सारे सामान भी रखा गया है।

बिल्डिंग्स में एक बैनर्स टंगा गया है जिसमे एक चित्र बना हुआ है।

सामने की ओर मे बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है जो की अभी खुला हुआ है ।